और हमें कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।

हमें एक सीजर दिखाई दे रहे हैं इसके पास पेन रखा हुआ है।

और हमें बहोत कुछ दिखाई दे रहा है।

यहां पे हमें एक पत्थर दिखाई दे रहा है।

ये फोटो किसी शॉपिंग मॉल की लग रही हैं जहां पे लड़कियों के ड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं कुछ डमी है जिनको भी ये ड्रेस --

इस फोटो में हमें कुछ आदमी दिखाई दे रहे है।

हमें दुकान के ऊपर एक औ दिखाई दे रही हैं।

इस घर के बाहर कुछ हाथ दिखाई दे रहे हैं।